कमल के फूल के पत्ते फैले हुए हैं।

यह कोई ऑफिस दिखाई दे रहा है।

नाई की दुकान में काफी सारे फूलों से सजावट की गई है।

और काफी सॉरे गुब्बारे टंगे--

पीले कलर की एक हाफ जैकेट पहनी है पीछे--

बच्चों ने नीले कलर की टी शर्ट और काले कलर का लोवर पहन रखा है।

वॉल पर भी लाल और काला कलर हो रखा है।

लड़के दिखाई दे रहे हैं।

बिछा कर कुछ अंपायर बैठे हैं।

आशा ब्यूटी पार्लर लिखा है और एक बोर्ड पर--

खुशी परिया मेकअप स्टूडियो लिखा है।

यह फोटो किसी फैक्ट्री से लिया गया है जिसमें कॉफी है।

नीचे की साइड काफी सारा घास--

ऐसे लगता है कि निचली साइड --

कुछ बोने हेतु खेत हैं।

एक मेज पर हाथ धरे खड़ा है और--

यह फोटो किसी शादी का लगता है।

यह फोटो किसी सरकारी स्कूल का लगता है।

दीवाल पर एक व्यक्ति बैठा है।

बाइक खड़ी है कुछ कुर्सियां पड़ी है।

और अलग अलग बॉक्स में--

अंदर बॉक्स में अलग अलग तरह की क्रीमें और फेस पाउडर --

येह क्रिसमस की सजावट की गई है।

उसके सामने एक बॉस की बड़ी कुर्सी भी है।

और कुछ पेन रखी है चारों तरफ।

सी कंट्रक्षण साइड से लिया गया है।

एक छोटी दीवार पर एक कैंपर और एक दो--

यह फोटो किसी समुन्दर का है जिसमें--

व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हैं और कुछ--

सामने नाई कि कैंची और कुछ सामान रखा है।

ई रिक्शा का कलर लाल और--

एक मेज पर हाथ धरे--